साइड में एक औरत खड़ी हुई है उसने एक बच्चा गोद में लिया हुआ है बहुत सारे क्रू मेम्बर है।

साइड में कुछ स्कूटी और मोटर साइकिल खड़ी है व कुछ लोग भी खड़े हैं।

ऊपर चढ़ने के लिए सीढिया बनी हुई है एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है जिसपे भैसमा उप डाकघर लिखा हुआ है।

स्कूटी व बाइके भी खड़ी हुई है साइड में कुछ गाड़िया भी खड़ी हुए है एक गाड़ी का रंग का सिल्वर एक गाड़ी का रंग वाइट है।